और वहां पे पेड़ की अलग अलग डिजाइनिंग हो रखी है और मिट्टी बहुत ज्यादा यहां पे हो रखी है।

यहां पर ये शिवजी का मंदिर है बहोत ही अच्छा नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं परात वगैरह कट्टे वगैरह यहां पे आदमी तीन आदमी खड़े हुए हैं वो लोग सीमेंट बजरी को मिक्स करके घर बना रहे हैं।

शिवाजी नगर में है सिविल लाइन के पास है शिवाजी नगर विकास द्वारा संचालित है वहां पर बहोत सारे डिजाइनिंग हो रगी है।

ये नजारा जयपुर का है। वहां के जलमैर का नजारा हैं यहां जलमैर में--

है और उसके बाहर बड़े-बड़े टेडी बियर वगैराह फोटो फ्रेम वगैराह और बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई है और एक साइकल वहा खड़ी हुई --

चीज मिलती है ओवन भी रखा हुआ है यहां पे और ए_सी भी लगा हुआ--

ये एक मंदिर है ये यहां मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है और यहां पर सीनरी टाइप में यहां पर अलग अलग डिजाइन की --

यह एक बड़ा बहोत बड़ा जंगल है यहां पर गायें पान छे गाये व खड़ी हुई है मिट्टी में मैदान में वो --

यह श्री जगदंबा आयुर्वैदिक भंडार है यहां पर आयुर्वेदिक दवाईयां मिलती है और उस और स --

ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एवं पंचकर्म सेंटर है ये यह--

यहां पर बहोत अच्छा नजर आ रहा है साथ में ही वहां पर भी बहुत ही --